इसके ऊपर मोदी केयर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है सामने टेबल पर फोन पे का क्यू आर कोड रखा दिखाई दे रहा है ऊपर एक पंखा लगा दिखाई दे रहा।

और वहां पर कबर्ड में बहुत सारा सामान भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है पीछे एक थैला टंगा हुआ दिखाई दे रहा है और ऊपर कुछ बर्तन पर टंगे हुए दिखाई दे रहे है।